इक्लिप्स का उपयोग करके एरर्स और डिबगिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि साधारण जावा प्रोग्राम लिखते समय संभावित एरर क्या हैं
उन एरर्स की पहचान कैसे करें और इक्लिप्स का उपयोग करके उन्हें कैसे सुधारें
इस ट्यूटोरियल के लिए हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु 1110 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में जावा प्रोग्राम को कैसे बनाएँ और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाइ गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpspoken tuitorialorg एक साधारण जावा प्रोग्राम में विशिष्ट एरर्स हो सकती हैं
सेमीकॉलन छूटना मैसेज के आसपास डबल कोट्स छूटना
फाइल का नाम और क्लास का नाम बेमेल होना
और प्रिंट स्टेटमेंट को लोअर केस में टाइप करना
हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और फिर इनमें से प्रत्येक एरर्स को बनायेंगे और देखेगें कि इक्लिप्स में क्या होता है
यहाँ हमारे पास इक्लिप्स इडे और हेलोवर्ल्ड ट्यूटोरियल के लिए उपयोगित प्रोजेक्ट है
हम प्रोजेक्ट में एक नया क्लास बनायेंगे और इसका उपयोग न्यू क्लास में करेंगे
क्लास को एरर फ्री नाम दें और मेथड स्टब्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन चुनें

पैकेज एक्स्प्लोरर को मिनिमाइज करें
कमेंट्स को हटाएँ और कुछ एरर्स के लिए प्रिंट स्टेटमेंट जोडें

इक्लिप्स में जिस लाइन में एरर है वह बाईं मार्जिन पर रेड क्रॉस चिह्न के साथ दिखाई देगी
इस केस में systemoutप्रिंटलन लाइन में एक एरर्स है और इसलिए इसके बाईं ओर रेड क्रॉस चिह्न है
एरर्स की सूची क्रॉस चिन्ह पर माउस घुमाने से प्रदर्शित होती है
पहली एरर प्रदर्शित होती है सिंटैक्स एरर इंसर्ट semi कोलोन टो कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट्स
ऐसा इसलिए क्योंकि हमें प्रोग्राम के प्रत्येक स्टेटमेंट को सेमीकॉलन के साथ समाप्त करना है
अतः स्टेटमेंट के अंत में सेमीकॉलन को प्रविष्ट करें
Ctrl एस के साथ फाइल सेव करें
ध्यान दें कि जैसे ही हम सेमीकॉलन जोडते हैं और फाइल को सेव करते हैं पहली एरर चली जाती है
अब वहाँ केवल एक एरर है जो है हेलो वर्ल्ड कैनोट बीई रिजॉल्व्ड टो आ वेरिएबल जिसका अर्थ है कि कंसोल पर कोई भी मैसेज दर्शाने के लिए मैसेज में डबल कोट्स सम्मिलित होना चाहिए
बिना कोट्स के जावा सोचता है कि हेलोवर्ल्ड वेरिएबल का नाम है
अब मैसेज के पहले और बाद में डबल कोट्स को जोडें

Ctrl एस से सेव करें
हम देख रहें हैं कि रेड क्रॉस चिन्ह चला गया है और प्रोग्राम एरर मुक्त हो गया है
अतः प्रोग्राम को रन करें और देखें कि क्या होता है
जावा एप्लिकेशंस के रुप में रन करें
हम देख रहें हैं कि मैसेज कंसोल पर प्रिंट हो गया है
अगली एरर देखते हैं
यह फाइल का नाम और क्लास का नाम बेमेल होने के कारण होती है
यह आमतौर पर इक्लिप्स में नहीं होता है
यह इसलिए क्योंकि हमने फाइल को बनाने के लिए न्यू क्लास विजार्ड का उपयोग किया है और इक्लिप्स स्वतः एक फाइल बनाता है
लेकिन यदि हम इक्लिप्स के बाहर जावा फाइल को बनाते हैं और इसे प्रोजेक्ट से जोडते हैं तो उसमें एरर हो सकती है
अतः क्लास के नाम को बदलकर एरर को संतुलित करें
चूँकि जावा केस सेंसिटिव है अब क्लाम का नाम और फाइल का नाम मेल नहीं खाते हैं
ध्यान दें कि बाईं मार्जिन पर रेड क्रॉस चिह्न है
और एरर मैसेज है थे पब्लिक टाइप एररफ्री मस्ट बीई डिफाइंड इन आईटीज ओवन फाइल
इसके अलावा ध्यान दें कि शब्द एररफ्री लाल रंग से चिन्हांकित है
इक्लिप्स इटेलिजेंट्स फिक्सेस प्रदान करता है और यहाँ हमारे पास दो फिक्सेस उपलब्ध हैं
पहला है रिनेम कंपाइलेशन यूनिट टो एररफ्री जावा दूसरा है रिनेम थे टाइप टो एररफ्री फिक्स जिसे हम देख रहे हैं वह दूसरा है
और हम देखते हैं कि एक बार आप फाइल का नाम बदल देते हैं क्लास एरर मुक्त हो जाता है एरर यहाँ मिसिंग है
दूसरी एरर प्रिंट स्टेटमेंट में टाइपिंग की गलती के कारण होती है
बडे एस को छोटे एस में बदलें
हम देखते हैं कि वहाँ रेड क्रॉस चिन्ह है
और एरर मैसेज है सिस्टम कैनोट बीई रिजॉल्व्ड
इसका अर्थ है कि जावा सिस्टम नाम द्वारा क्लास या ऑब्जेक्ट या वेरिएबल की अपेक्षा करता है
लेकिन यहाँ कोड में सिस्टम ऑब्जेक्ट जैसे कुछ नहीं है
अतः संभावित फिक्सेस देखें
यहाँ 11 फिक्सेस हैं जिनमें से फिक्स जिसे हम देख रहे हैं वह 8थ ऑप्शन है
चंगे टो सिस्टम javaलांग आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसे बडे एस में बदलते हैं एरर हट जाती है
इस प्रकार इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में एरर्स को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं
यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इस ट्यूटोरियल में हमने देखा
जावा प्रोग्राम लिखते समय विशिष्ट एरर्स क्या हैं और इक्लिप्स का उपयोग करके उन्हें कैसे पहचाने और सुधारें
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रुप में नीचे दिए गए कोड में एरर ज्ञात करें और उन्हें फिक्स करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारें में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध ट्यूटोरियल को देखें यह प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करने और देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए contact स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें